बरफ लगे हुए हैं टेबल रखी हुई है।

हॉस्पिटल है यहां पे बहोत सारी चेयर रखी हुई है।

यहां पे खिड़कियां भी देख रही हैं बाजू में झाड़ियां भी लगी हुई हैं बोटल भी रखी हुई है।

यहां पे एक मकान बन रहा है ऊपर लेंटर डल रहा है यहां पे बहोत सारे--

यहां पे एक आदमी भी खला हुआ है बहुत बड़ा गेट भी लगा हुआ है।

गंदा सा तो दिख रहा है आजू बाजू और गुटके उठके भी दिख रहे हैं दुकान में साबुन आबून भी लगाने के लिए एक आदमी चाय बना रहा है दुकान में बहुत सारे सा--

नई यहां पे तो गमले रखे हुए छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं गमलों में।

फेस वॉश भी रखा हुआ है। यहां पर सैनिटाइजर ही रहे--

संतरा के नीचे एक पेपर भी बिछा हुआ है ऊपर एक--

यहां पर एक बहुत सुंदर मकान बना हुआ है।

यहां पर एक डेकोरेशन बहोत शानदार लगा हुआ है कैमरे भी लगे हुए है शायद यहां पे कुछ भागवत पुराण--

हो रहा है महाराजा वाली चेयर भी रखी हुई हैं औरतें भी बैठी हुई हैं चेयर भी रखी हुई है कुछ पंडाल भी रखे हुए हैं।

और आदमी ही बैठे हुए हैं। पंखे भी गमले भी सब--

यहां पर एक बहोत सुंदर मकान बना हुआ है बहोत सारा कचरा भी डाला हुआ है बहोत सारी गाड़ियां भी रखी हुई है ओ--